एक समुद्र का दृश्य है जिसमें दो नाव नजर आ रहे हैं।

मिल्टन का बाटल भी नजर आ रहा है और नीचे की फर्श भी नजर आ रही--

यह एक स्कूल का ग्राउंड का दृश्य है।

स्कूल का ग्राउंड बहोत बड़ा नजर आ रहा है जिसके अगल बगल में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह एक गिटार का दुकान का दृश्य है जिसमें बहोत सारे गिटार नजर आ रहे हैं।

कुछ बेड बन भी रहे हैं बहोत सारे रंग के बेड बने हुए बनाए हुए रखा हुआ है।

यह एक जनरल स्टोर का दुकान का दृश्य है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति कुछ खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक जिम का दृश्य है।

उस ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है जोकि ब्ल्यू कलर का है।

यहां का कलर व्हाइट नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत सारे दरवाजे बहुत सारे खिड़कियां भी नजर आ रहे हैं।

जिसमें बहोत सारे व्यक्ति कुछ लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस खेत के बगल में घर भी नजर आ रहे--

यह एक फार्म हाउस है जो की बहुत खूबसूरत है।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

यह एक डेकोरेटेड रूम का दृश्य है जिसका डेकोरेट बहुत सुंदर है।

यहां पे सामने एक दरवाजा भी नजर आ रहा है जिसका कलर ब्राउन है।

के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

इस पार्क में हरे भरे पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इसका कलर व्हाइट नजर आ रहा है जिसमें एक दरवाजा नजर आ रहे हैं और बहुत सारी खिड़कियां नजर आ रही हैं।

एक पा पानी की टंकी बनी हुई नजर आ रही है और एक बैनर लगा हुआ --

इस दुकान में एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

बहुत सारी खिड़कियां भी नजर आ रही है ।

यह एक अमरूद का पेड़ का दृश्य है जिसमें अमरूद के पत्ते बहुत सारे नजर आ रहे हैं।